यह सैलून है और यहाँ पर बाल कटवाने के लिए आते है लोग--

शंकर भगवान और अनेक प्रकार के सरस्वती माता और राम-लक्ष्मण आदि का चित्र दिखाई दे रहा है।

और ये नीला रंग का कुछ कपड़ा है।

और ये लोग अपने पैर को पकड़े हुए है हाथ से और बहुत अच्छा दिख रहा है और यहाँ पर कपड़ा भी बिछाये हुए है।

यहाँ लोहा से बना एक--

यहाँ पर ट्रासफार्मर भी दिखाई दे रहा है और साथ में बहुत बड़ा-बड़ा ला --

और इसका रंग है लाल है बैगनी है गुलाबी है हरा हैऔर स्टील है।

यहाँ पर हरा-भरा पेड़ -पौधा दिखाई दे रहा है अम मुझे लग रहा है एक उद्यान होगा और यहाँ पर छोटे-छोटे पौधे है जिन्हें बड़ा करने--

यहाँ आश्रम है जिसका नाम चठोलीक आश्रम लिखाया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर दरवाजा--